सूंदर होते हैं और ये काफी खुशबू देते हैं ये --

ये सरकारी हस्पताल है और इसमें लोग बैठे हैं।

ये बालक है उसके पीछे ये है ।

बना रहे है मिस्त्री लेबर और --